घर बना रहा है बहुत सारा आदमी में दिखाई दे रहा है मकान बना रहा है बालू गिट्टी सैना लेबर मिस्त्री का काम कर रहा है।

घर जैसा दिख रहा है नीचे मे हाल है ऊपर लाइट में लगा हुआ है।